यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रोपर्टिज विंडो के बारे में है
यह स्क्रिप्ट रवि द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रोपर्टिज विंडो क्या है
प्रोपर्टीज़ विंडो में टेक्सचर पैनल क्या है प्रोपर्टीज़ विंडो के टेक्सचर पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं
Iमैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें
प्रोपर्टिज विंडो हमारी स्क्रीन के दाएँ भाग पर स्थित है
हम प्रोपर्टिज विंडो के कुछ पैनल्स और उनकी सेटिंग्स को पिछले ट्यूटोरियल में पहले ही देख चुके हैं
प्रोपर्टिज विंडो के अगले पैनल्स को देखते हैं
पहले हमें अच्छे से दिखने और समझने के लिए अपनी प्रोपर्टिज विंडो का आकार बदलना चाहिए
प्रोपर्टिज विंडो के बाएँ भाग पर बायाँ क्लिक करें पकड़कर रखें और बायीं ओर ड्रैग करें
अब हम प्रोपर्टिज विंडो में ऑप्शन्स अधिक स्पष्टतः देख सकते हैं
ब्लेंडर विंडो का आकार कैसे बदलें यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल -ब्लेंडर में विंडो के प्रकार कैसे बदलें देखें
प्रोपर्टीज़ विंडो की सबसे ऊपरी रो पर जाएँ
प्रोपर्टीज़ विंडो के सबसे ऊपरी रो पर चेकर्ड स्क्वेयर आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह टेक्सचर पैनल है
यहाँ हम सक्रिय ऑब्जेक्ट के सक्रिय मटैरियल में एक टेक्सचर जोड़ सकते हैं
टेक्सचर आइकन के ठीक नीचे हम प्रदर्शित लिंक देख सकते हैं
क्यूब टो व्हाइट टो टेक्स
इसका मतलब है कि सक्रिय ऑब्जेक्ट क्यूब है
व्हाइट क्यूब का सक्रिय मटैरियल है
टेक्स सफेद मटैरियल का सक्रिय टेक्सचर है
यहाँ तीन प्रकार के टेक्सचर्स हैं मटीरियल टेक्सचर्स वर्ल्ड टेक्सचर्स और ब्रश टेक्सचर्स
इस ट्यूटोरियल में हम मटीरियल टेक्सचर्स देखेंगे
वर्ल्ड टेक्सचर्स और ब्रश टेक्सचर्स आगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
यह टेक्सचर स्लॉट बॉक्स है
डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय मटैरियल के लिए एक टेक्सचर सक्षम है
यह नीले में चिह्नांकित है
चिह्नांकित टेक्सचर से दूर दायीं तरफ चेक बॉक्स पर बायाँ क्लिक करें
अब टेक्सचर अक्षम हो गया है
चेक बॉक्स पर पुनः बायाँ क्लिक करें
यह फिर से अक्षम हो गया है
चेक बॉक्स के आगे एक वर्टिकल स्क्रोल बार है
वर्टिकल स्क्रोल पर बायाँ क्लिक करें और पकड़कर रखें
अपना माउस नीचे की ओर ड्रैग करें
अब वर्तमान मटैरियल के लिए आप सभी उपलब्ध टेक्सचर स्लॉट्स देख सकते हैं
प्रत्येक स्लॉट एक चेकर्ड स्क्वेयर से प्रदर्शित है
सक्रिय टेक्सचर पर वापस स्क्रॉल करें
टेक्सचर स्लॉट बॉक्स में टेक्सचर्स को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए अप और डाउन एरोस का उपयोग करें
डाउन अरो पर बायाँ क्लिक करें
सक्रिय टेक्सचर दूसरे टेक्सचर स्लॉट पर चला जाता है
यूपी अरो पर बायाँ क्लिक करें
सक्रिय टेक्सचर पहले स्लॉट पर वापस चला जाता है
अप और डाउन एरोस के नीचे एक और ब्लैक डाउन अरो है
ब्लैक डाउन अरो पर बायाँ क्लिक करें
एक मेन्यू प्रदर्शित होता है
कॉपी टेक्सचर स्लॉट सेटिंग्स पर बायाँ क्लिक करें
बॉक्स में दूसरे टेक्सचर स्लॉट पर बायाँ क्लिक करें
यह नीले रंग में चिह्नांकित होता है
ब्लैक डाउन अरो पर फिर से बायाँ क्लिक करें
पस्ते टेक्सचर स्लॉट सेटिंग्स पर बायाँ क्लिक करें
पहले टेक्सचर सेटिंग्स के समान ही दूसरे टेक्सचर स्लॉट में एक नया टेक्सचर प्रदर्शित होता है
स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नेम बार के दायीं तरफ क्रॉस चिह्न पर बायाँ क्लिक करें
दूसरा टेक्सचर हट गया है
साथ ही इसकी सेटिंग्स भी चली गयी हैं
प्लस चिह्न के साथ एक न्यू बटन प्रदर्शित होता है
न्यू बटन पर बायाँ क्लिक करें
दूसरे टेक्सचर स्लॉट में एक नया टेक्सचर प्रदर्शित होता है
अतः एक नया टेक्सचर जोड़ने का यह एक और तरीका है
ध्यान दें कि कैसे दूसरे टेक्सचर के बायीं तरफ चेकर्ड स्क्वेयर दूसरे चित्र में बदल गया है
नीचे एक प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित होती है
यह सक्रिय टेक्सचर का प्रिव्यू प्रदर्शित करती है
इस टेक्सचर को फिर से नाम दें
स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नामे बार पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर बम्प टाइप करें और एंटर दबाएँ
नेम बार के बायीं तरफ चेकर्ड स्क्वेयर पर बायाँ क्लिक करें
यह टेक्सचर मेन्यू है
सीन में उपयोग किये जाने वाले सभी टेक्सचर्स यहाँ सूचीबद्ध हैं
नामे बार के नीचे टाइप बार है
डिफ़ॉल्ट रूप से सभी नये टेक्सचर्स क्लाउड्स टेक्सचर दर्शाते हैं
क्लाउड्स पर बायाँ क्लिक करें
यह टाइप मेन्यू है
यहाँ ब्लेंडर द्वारा समर्थित सभी टेक्सचर्स सूचीबद्ध हैं
वूड वोक्सेल दाता वोरोनोई इत्यादि
टेक्सचर के किसी भी प्रकार को चुनने के लिए उस पर बायाँ क्लिक करें
अभी के लिए मैं क्लाउड्स टेक्सचर रखता हूँ
यह टेक्सचर प्रीव्यू विंडो है
यहाँ तीन डिस्प्ले ऑप्शन्स हैं
टेक्सचर
डिफ़ॉल्ट रूप से यह डिस्प्ले हमेशा चुनित रहता है
मटीरियल पर बायाँ क्लिक करें
यह मटैरियल पर टेक्सचर का प्रिव्यू प्रदर्शित करता है
बोथ पर बायाँ क्लिक करें
जैसा कि नाम से पता चलता है अब दोनों टेक्सचर और मटैरियल डिस्प्ले साथ साथ प्रदर्शित हैं
शो अल्फा पर बायाँ क्लिक करें
अब टेक्सचर पारदर्शी हो गया है
यह शीशे और पानी जैसे मटैरियल्स के लिए इस्तेमाल होता है
अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं
शो अल्फा पर फिर से बायाँ क्लिक करें
अगली सेटिंग इन्फ्लूएंस है
यहाँ विभिन्न ऑप्शन्स हैं जो टेक्सचर को मटैरियल के चार मुख्य क्षेत्रों में प्रभाव डालने में मदद करते हैं
डिफ्यूज शेडिंग स्पेक्यूलर और जियोमेट्री डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ्यूज के अंदर कलर अक्षम है

कलर बार के बायीं तरफ चेकबॉक्स पर बायाँ क्लिक करें
कलर अब अक्षम हो गया है
टेक्सचर कलर मटैरियल डिफ्यूज कलर को अब और प्रभावित नहीं कर रहा है
जियोमेट्री पर जाएँ
नॉर्मल के आगे चेकबॉक्स पर बायाँ क्लिक करें
अब टेक्सचर का नॉर्मल मटैरियल की जियोमेट्री को प्रभावित करता है
आप परिणाम प्रिव्यू विंडो पर देख सकते हैं
प्रिव्यू स्फीयर के ऊपर हर तरफ बादल छोटे उभार के रूप में फैल गये हैं
ब्लेंड नियंत्रित करता है कि टेक्सचर मटैरियल के साथ कैसे मिलता है
डिफ़ॉल्ट रूप से यह मिक्स निर्धारित है
मिक्स पर बायाँ क्लिक करें
यह मेन्यू ब्लेंडर द्वारा समर्थित सभी टेक्सचर ब्लेंड प्रकारों को सूचीबद्ध करता है
क्या आप आरजीबी टो इंटेंसिटी के नीचे यह पिंक कलर बार देख सकते हैं
यह डिफ़ॉल्ट टेक्सचर कलर है
अभी यह मटैरियल के रंग को प्रभावित नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इन्फ्लूएंस के नीचे कलर ऑप्शन को अक्षम कर दिया है
पिंक कलर पर बायाँ क्लिक करें
एक कलर मेनू प्रदर्शित होता है
यहाँ हम अपने टेक्सचर के लिए कोई भी रंग चुन सकते हैं
अभी के लिए इसे पिंक छोड़ दें क्योंकि हम टेक्सचर कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं
बम्प मैपिंग निर्धारित करता है कि कैसे टेक्सचर का नॉर्मल मटैरियल की जियोमेट्री को प्रभावित करता है
बम्प मैपिंग के लिए वर्तमान तरीका डिफ़ॉल्ट है
डिफॉल्ट पर बायाँ क्लिक करें
यह मेन्यू बम्प मैपिंग के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करता है
बेस्ट क्वालिटी डिफॉल्ट कंपैटिबल और ओरिजिनल
कंपैटिबल पर बायाँ क्लिक करें
बम्प इन्फ्लूएंस बढ़ता है
अगली सेटिंग क्लाउड्स है
यहाँ क्लाउड्स टेक्सचर के लिए विभिन्न ऑप्शन्स हैं
ग्रेस्केल टेक्सचर्स को ग्रेस्केल मोड में दर्शाता है
कलर पर बायाँ क्लिक करें
001112 001108 अब प्रिव्यू विंडो में टेक्सचर रंगों के मिश्रण में प्रदर्शित होता है
किन्तु रंग मटैरियल पर कोई प्रभाव नहीं डालता
नोइसे क्लाउड्स टेक्सचर की विकृति को निर्धारित करता है
सॉफ्ट नोइसे डिफ़ॉल्ट विकृति है
हार्ड पर बायाँ क्लिक करें
अब प्रिव्यू विंडो क्लाउड्स टेक्सचर में गाढ़े काले घेरे प्रदर्शित करता है
उसी समय मटैरियल के ऊपर उभार गहरे हो जाते हैं
यह हार्ड नोइसे है
बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर में नॉइज़ का आधार या श्रोत है
ब्लेंडर ओरिजिनल पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ नोइसे बेसिस मेन्यू है
यह ब्लेंडर में सभी समर्थित नॉइज़ बेसेस की एक सूची प्रदर्शित करता है
वोरोनोई क्रैकल पर बायाँ क्लिक करें
आप प्रिव्यू विंडो में बदलाव देख सकते हैं
अतः इस तरह नॉइज़ बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर को प्रभावित करता है
क्लाउड्स टेक्सचर में साइज नाबला और डेप्थ कंट्रोल नॉइज़ की विशेषताएँ हैं
प्रोपर्टिज़ पैनल के सबसे ऊपरी रो के आखिरी दो आइकन पार्टिकल्स और फिजिक्स हैं
इन्हें अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में देखेंगे जब हम अपने एनिमेशन में पार्टिकल्स और फिज़िक्स का इस्तेमाल करेंगे
3डी व्यू पर जाएँ
लैम्प चुनने के लिए दायाँ क्लिक करें
ध्यान दें कि प्रोपर्टीज़ पैनल के उपरी रो के आइकन्स अब परिवर्तित कैसे हो गये हैं
कुछ आइकन्स बदल गये हैं जबकि कुछ हट गये हैं
3डी व्यू में कैमेरा पर दायाँ क्लिक करें
फिर से आप देख सकते हैं कि प्रोपर्टिज़ पैनल के सबसे ऊपरी रो के आइकन्स परिवर्तित कैसे हो गये हैं
इसका मतलब है कि प्रोपर्टिज़ विंडो के टूल्स गतिशील हैं और 3डी व्यू में सक्रिय ऑब्जेक्ट के प्रकार पर निर्भर रहते हैं
अतः इसी के साथ प्रोपर्टिज़ विंडो पर हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है
अब आप आगे जा सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं
क्यूब में क्लाउड्स टेक्सचर जोड़ें और क्लाउड्स नॉइज़ के साइज नाबला और डेप्थ के साथ प्रयोग करें
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है
oscariitbacइन और spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट - स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ई मेल पर संपर्क करें contactspoken tutorialorg हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद